एक व्यक्ति हाथी को नेहला रहा हैं।

उन्होंने पर्पल कलर की शर्ट पेहनी हुई है डॉट डॉट वाली--

और लड़कियों ने ब्लू शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहनी हैं।